पर कुछ जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ बच्चियाँ भी दिखाई दे रही है जिनके हाथ में तिरंगा झ--

सामने एक शॉप दिखाई दे रहीं हैं शॉप में बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा हैं शॉप में एक शटर भी दिखाई दे रहा हैं शटर का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ पर बहोत सारी बाईकें भी दिखाई दे रही हैं।

रेस्टोरेंट में बहुत सारी लाइटे भी दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाइ दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है इसका लोगो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है इसकी दीवार पर रेड कलर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे शटरें लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इनका कलर रेड कलर --

दे रहा है यहाँ पर बहुत सारे अलग लोग खड़े हुए भी दिखाइ दे रहे हैं यहाँ पर एक शटर भी लगा हुआ दिखाइ दे --

दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।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

शॉप दिखाई दे रही है शॉप कुछ--

मेरे सामने एक जूं दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर बिल्डिंग में कुछ सीढ़ियां भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

मोबाइल की भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक दीवार भी दिखाई दे रही है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक घर भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर दीवार का कलर पिंक कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर एक--

ईसा मसीह की भी फोटो दिखाई दे रही है यहां पर वाइट कलर की दीवार भी दिखाई दे रही है यहां पर कुछ--

यहां पर बिल्डिंग का कलर येलो कलर का भी दिखाइए दे रहा है।

यहां पर एक कूलर भी दिखाई दे रहा है यहां पर एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।